देखे में पूरा बढ़िया लग हई | पुरे जगह ए बाउंड्री ओंड्री घेरल हई ।

ते बड़का बनैले हे बाप रे कहाँ के इंजीनियर बनैले होतइ कौन मिस्त्री एते बड़का घर है ।

देखे में बढ़िया लगा है पूरा फुल से सजल हय। बड़ा स्टाइल के लग हई | कहाँ के हई पता न लेकिन देखे में बड़ा बढ़िया लग है।

पुरे गमला उमला से लैक लागल है पुरे जना लगे पानी उनी भरल है उना जंगल झार पेड़-पौधा सब लागल है पुरे फुलवारी के तरह लग है देखे में।

एते बड़का आदमी फिल्ड आरे बाप रे। एते बड़का पुरे पेड़ गाछ आर हई। पूरे आदमी लौके हेती केहू आदमी पुरो चारो तरफ लौके गाछ और पुरा। एते बड़का फिल्ड हई |

घडी उड़ी लागल हई। गेट आर हई पुरे देखे में लग है खंडहर के तरह पुरे रंगल ओंगल | केते पुराना घर बुझा हे केते पेड़ गाछ आर हई।

इते बड़का पार्किंग हेय बा एते बड़का स्कुल की तरह लगेत हय जेना लगे प्रधानमंत्री आ आबे ने हेय ओना पूरे पार्किंग हेय पेड़-गाछ----

केते बड़का पार्क है मंदिर ला बनल हई लगे बाप रे भयानक है। कहाँ के है पता न | एते बड़का लग है पुरे सज्जल वज्ज्ल है पूरा बोर्ड उर्ड लगल हई।

पुरे कपड़ा आर से सजेले हय पुरे ऐते बड़का पार्किंग पुरे लगे देखे में भायनक ईटा ही ईटा लागेल हे पुरे जंगल झार में जे मोल--

दुभी-उभी घास उस छै पूरा पेड़-पौधा आर उनने ----